यहाँ हमें एक बहोत बड़ा जो है महल दिखाई दे रहा है और ये बहोत ही बड़ा है सुन्दर है।

वॉल पे पेंटिंग है और उस पेंटिंग के ऊपर पे वॉच लगी हुई है घड़ी --

बोहोत ही डिलीशियस और सुंदर से कप है।

यहाँ पर हमें एक बॉय दिखाई दे रहें हैं बॉय ने ग्रीन कलर की टी-शर्ट कैरी की हुई है।

यहाँ हमें एक बहोत बड़ा सा जो है स्टेज दिखाई दे रहा है जो की किसी मंदिर की तरह दिख रहा है।